घर का एक झलक यहां हमारे घरों में उपयोग होने वाले दैनिक जीवन--

जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने रखें गए है।

मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हैं यह देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं।